और मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पेड़ हं दिख रहा है।

और इस मंदिर के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और उसके बगल मे बहुत हरे भरे पेड़ है।

और दुकान के अंदर बहुत सारे कस्टमर भी है।

और इसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।

और इस नदी का पानी बहुत साफ है।

और इस होटल का नाम होटल मीरा पैलेस है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

और नीचे ढलाई की हुई। है।

जहां पर तीन चार लड़के जिम कर रहे हैं।

इसमें ब्लू रंग का शटर लगा हुआ है।

यह एक छोटी सी जनरल स्टोर दुकान है।

एक दो नंबर पर है। एक तीन नंबर पर। दो नंबर वाला कंप्यूटर चालू है और तीन नंबर वाला बंद है।

बगल में दो बड़े से बल्ब लगे हैं।

यह एक बहुत सुंदर तालाब का चित्र है।

और बाकी सब छोटे-छोटे हैं।

और इस दुकान का नाम वेदांत बुक्स वर्ल्ड है।

यह एक चाय की दुकान है।